यहा एक नदी है जो नदी के नदी का किनारे ढेर सारे पत्थल हैं।

ढेर सारे आदमी बैठे हुए हैं जिसमें की वाइट शर्ट हाफ पैंट पीला कलर का।

और ये गिलास है लाइट भी है बहुत सारा लगा हुआ जो बर रहा है और पौधा भी है यहां पे--

कुछ लिखा हुआ है बोर्ड में यहां भी एक कटरा है।

ये एक मंदिल है जो व्हाइट कलर का है और ये एक लोहा का गेट है जो गुन गोल्डन --